कुछ बैछ लगे हुए हैं जिनका कलर हरा है कुछ आदमी खड़े --

और एक पानी का पाइप पड़ा हुआ है जिसका कलर सफ़ेद और गुलाबी --

एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है स्विमिंग पूल के चारो और दीवार बनी हुई है। दीवार में कुछ कलर पर्पल है कुछ कलर नीला और कुछ कलर सफ़ेद है।

यह एक बड़ा जिम है। जिम की दीवार पर पंखा लगा हुआ है। जिसका कलर सफेद है। साइड में एक पानी का पाइप निकला हुआ है जिसका कलर सफेद है।